नीचे एक रूम है जिसमें लकड़ी का दरवाजा है नीचे दो कार खड़ी हुई है एक ब्लैक एक वाइट --

पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने से दो झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

एक स्कूटर में एक आदमी बैठा हुआ है।

और लाइटिंग लगी हुई और एक बाइक भी खड़ी--